जहाँ पे एक बेड है और एक रूम है।

जीरो थ्री नाइन संत कबीर महंत रविन्द्र दास ब्रह्मचारी इंटर महाविद्यालय भलुई वैशाली जो वैशाली में --

यह एक साइकिल की दुकान है यहाँ पे बोहोत सारी साइकिले है और एक इंसान साइकिल खरीदने के लिए आ रखा है जो--

पत्थरों के टींलो से बना पड़ा हुआ है यहाँ पे तीन औरतें और एक बच्चे हैं।

और आठ कुर्सियां लगी पड़ी हुई है और टेबल के ऊपर ग्लोब रखा हुआ है तीन बोतले --

यह एक पार्क है। जहा पे बोहोत सरे पेड़-पौधे बने पड़े हुए है और बिच में बनाया गया है।

यहाँ पे एलेवेन ट्वेल्थ अ और अधर्श अ भी पढ़ाए जाते है। जिनका अ टीचर का नाम है अभिजीत कुमार।

यह एक स्टेशनरी शॉप है |

और बहुत सारे आइटम्स रखे हुए है ग्रोसरी के।

और उधर के साइड में कुछ मेडिसिन है दो कुर्सियां है |

कंप्यूटर है और जहा पे आगे में लिखा हुआ है वोडाफ़ोन और ऊपर में एयरटेल फोर जी लिखा हुआ है।

ट्रेन वाले झूले है और बहुत सारी लइटे लगी हुई है बहुत सारे पेड़-पौधे है।

प्रतिमा स दो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।

यह एक मीटिंग हॉल है जिसमें दो अ चार --

यह एक मार्केट है जहाँ पे सेंट्रल आ बैंक ऑफ़ इंडिया --

यहाँ एक गोशाला है जहाँ पे गाय घास को --

यह एक अअ आई.टी.आई. का कॉलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर --

गेट दिख रहा है जिसमें हरे परदे लटके पड़े हुए हैं |

एक गेट कीपर बैठा हुआ है |